के बोर्ड लगे हुए है बिल्डिंग के बा आगे एक बहुत सारी जगह पड़ी हुई है ग्रीन बोर्ड वाइट बोर्ड लगा --

घड़ी लगी हुई है वाइट कलर कि एक फेन लगा हुआ है जिसका कलर वाइट है गेट दिखाई दे रहा है बहुत सा चार बोर्ड लगे हुए हैं ।

फेस पर मास्क लगाया हुआ है बनियान पहन रखी है एक व्यक्ती चल के आ रहा है इसने येलो कलर कि टी शर्ट पहनी है ।